सामने लाइट दिखाई दे रही है और नीचे पानी दिख रहा है।

सर्विस दिखाई बोर्ड दिखाई दे रहा है और सामने एक ब्लू कलर का गेट दिखाई दे रहा हैं।

वाटर बॉक्स पानी वाला दिखाई दे रा है पौधे लगे हुए हैं।

इस तस्वीर मे हमको एक होटल दिखाई दे रहा है।

जिसमें अलग-अलग तरह के झूले लगे हुए हैं।

और सामने लाइटे जग रही है झूलो के बीच में--

इस तस्वीर में हमको खिलौने वाली शॉप दिखाई दे रही है।

सामने एक बाल्कनी बनी हुई है एक बारी बनी हुई है इसके में फाइले पड़ी हुई है।

फूलों की माला टंगी हुई है एक जेंट्स खड़ा हुआ है और चेयर पड़ी हुई है।